और यहां पास ट्रैक्टर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं आयशर ट्रैक्टर एक दमदार ट्रैक्टर कंपनी है जोकि बहोत ही पुरानी ।

और ये एक पिंजडे में कैद दिखाई दे रहा है।